ये बहुत सारे फॉरवीलर गाड़ी यहाँ पे लगी हुए है।

सड़क का नजारा यहां पर देखने को मिल रहे हैं और आगे तरफ हरे-भरे पर पौधे देखने को मिल रहे हैं।

फूल देखने को मिल रहे है यहाँ पे।

देखने को मिल रहे है जैसे यहां पर कोई एक --